और उस लैब में रेड कलर की चेयर है रेड कलर के कारपेट है वाइट कलर की--

एक हाउस है उसमें वाइट कलर ब्लैक कलर --